य जिसमें बैट बॉल वगैरा इस टाइप के पैकेटों में खिलौने बाहर दुकान के बाहर टंगे हुए हैं।

आस पास सफेद कलर की बिल्डिंग है उसके आस पास भी सफेद कलर की बिल्डिंग है।

देख रहे हैं इसका एक रेस का मैदान है जिसमें कुछ बच्चे रेसिंग कर रहे हैं।

रेसिंग की बहुत सारी लगी आसपास बाउंड्री है।

एक मैदान सा बना हुआ है जिसमें जिसके बाहर बहुत सारी मोटरसाइकिलें --

आसपास बिल्डिगें कार खड़ी हुई हैं कुछ गाड़ियों पे हेलमेट वगैरह भी हैं।

एक गार्डन टाइप का बनाया हरे से रंग का जिसमें बहोत सारी कारे खड़ी हुई है पार्किंग में--

जिसमें कुछ लेडिस है कुछ जेंट्स है और दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे हैं पंडाल में।

एक दुकान है जिसके अंदर बहुत सारे सामान रखे हुए है।

एक फूलों का फूलों का गुलदस्ता रखे हुए है जिसमें बहोत सारे लाल रंग के फूल है कुछ हरे रंग के फूल दिखाई दे रहे है।